इन चार में से दो लड़की और दो लड़के हैं।

ये एक हिंदू मंदिर है।

इसमें स्टूडेंट सब बहुतस्पोर्ट ड्रेस में है।

दीवारों के बगल में बहुत सारे बच्चे बैठके आराम कर रहे हैं।

ये एक कच्ची सड़क वाली मैदान लग रही है।

झीलों की चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है।

इस चित्र में कंप्यूटर और बिलिंग मशीन दिखाई दे रहा है।

फ्रूट्स है जो की एप्पल पाइनएप्पल हैं।

बिल्डिंग मशीन के एकदम सामने गाजर जैसी सब्जियां हैं।

स्टेडियम के मैदान में कुछ लोग हैं जो कि प्रेक्टिस करने आए हैं।

इस चित्र में बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बेकरी लग रहा है।

इस दृश्य में स्वीट्स के काउंटर लगे हुए हैं जिसमें बहुत सारे स्वीट्स हैं।

मांगो केक रेड वेलवेट वनीला चॉकलेट केक ऐसे कई तरह के केक्स हैं कुछ फ्रूट केक भी हैं।

साईं बाबा के तस्वीर के नीचे दो फूल के गमले है।

ये एक मॉल का चित्र है।

ये एक कार पार्किंग का चित्र है।

तस्वीर में एक बड़ा मेला या आयोजन दिख रहा है।

दिखने में तो ये बहुत बड़ी पुरानी इमारत लग रही है।

इसके चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस बेडरूम में एक सोफा भी है जो की लाल कलर का है।

ये एक जूलॉजिकल पार्क जैसे लग रहा है।

बहोत सारे फूलों के यह छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं।

दो टेबल्स भी दिख रहे हैं।

दिखने मे तो ये एक बुक स्टॉल या फिर स्टेशनरी लग रहा है।

उस आदमी के पीछे वुडन रैक्स में बहुत सारी किताबे को सजावट की गई है।

एक लड़का खड़ा है ऑरेंज टी_शर्ट में।

ये एक फूल मंडी है।

इस चित्र में मंदिर को हार फूल से सजाया गया है।

उस डिजिटल काउंटर के साइड में कुछ व्यक्ति क्यू में खड़े हुए है उनके हाथों में फॉर्म्स है जो की वो काउंटर में देने के लिए आए है।

ये एक छोटी सी सड़क है जो कि गांव की जैसे लग रही है।

पेड़ एकदम हरियाली हरियाली सी है।

इस चित्र में तीन पेंटर्स हैं।

कुछ दुकानदार है जोकि सब्जियां बकेट में से निकाल के रख रहे है।

सलून के अंदर दो आदमी भी बैठे हुए हैं।

तालाब के एकदम सिमने सामने बड़ी बड़ी इमारतें हैं।

और एक छोटी सी झील जैसी नदी है।

काशी विश्वनाथ का मंदिर बनारस में है।

ये एक हॉल का दीवार लग रहा है।

हॉल के बाहर एक छोटी सी स्टील की आर्च है चारों तरफ हरियाली हरियाली है।

हर एक मच्छी एक ही साइज में और दिखने में भी एक जैसी ही है।

इस फूल का नाम तमिल में कनगांबरम बोलते हैं।

ये एक होटल का डाइनिंग रूम है।

इस डाइनिंग टेबल हर एक चीज ब्लू कलर की है यहां पर ब्लू कलर की गुब्बारे भी लगे हैं।